वोट टूटा हुआ है वोट यानी नाव यहां पे तीन नाव दिख रहे हैं।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

और जो बस के आगे चार पुरुष है जिसमें से एक पुरुष बैग लेकर चलता हुआ दिख रहा है।

और हर दरवाजे का रंग ब्राउन है।

क्योंकि ऊपर में ऑपरेशन थिएटर लिखा हुआ है।

इसके बगल में एक टेंपू हैं।

उसका रंग व्हाईट कलर की है।

और इसके ऊपर में बहुत सारे पंखे और लाइट है।

मजदूर लोग मसाला को लाने में मदद कर रहे हैं और मिस्त्री लोग छत को ढाल रहे है।

और मूर्ति के पीछे और एक मूर्ति है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा पंडाल है।

महिलाएं साड़ी पहनी हुई है।

उसका कुर्ते का कलर ब्लू है।

हम लोग गधे को इंग्लिश में डंकी बोलते हैं।

यह एक घर है जिसके अंदर लकड़ी का वस्तु बना हुआ है।

इसमें बैलून गेट बनाया गया है।

जिनमें बहुत सारी गाड़ियां हैं और गा बगल में बहुत एक बड़ा घर है।

और इसके अंदर काफी लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं।

और इसके अंदर हरे रंग की कारपेट बिछाई गई है।

ब्लू वाले स्लाइडर के ऊपर एक लड़का है।

के बाहर एक आ पुरुष खड़ा है।

यहां पे मेडिसिन वगैरा मिलती है।

काईउप्स बैनर के ऊपर लाइफ इंश्योरेंस म्युचुअल फंड फिक्स्ड डिपॉजिट पी ओ एफ के प्रचार करने की पोस्टर लगी हुई है।

यह एक हरियाली जगह है यहां पे एक तालाब है तालाब का रंग हरा है।

यहां पे एक आदमी दिख रहा है उसके बगल में एक बाइक है।

यह एक दुकान है जिसके बाहर बहुत सारे पानी की बोतल रखे हुए है इसके बगल में एक प्रिंटर है।

जिसमें मीट साठ रुपये प्लेट मिलती है।

जिसमें से बहुत सारे बाइक है।

यहां बैंक में अह बाहर बहुत सारी लंबी लाइन लगी हुई है।

और बहुत सारी गाड़ीसाइकिलस्कूटी रखी हुई है।

और इस फल का पेड़ होता है।

और इसका स्वाद काफी मीठा होता है इसके अंदर एक गुठली निकलती है।

यह एक दुकान है जो कि सत्यम ट्रेडर्स का है।

इसमें बहुत सारे बिस्किट रखे हुई है।